एक बड़ा मैदान दिख रहा है मैदान के आस-पास पेड़-पौधे लगे हुए दिख रहे हैं।

कुछ लोग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं ऊपर आसमान दिखाई दे रहा है।

पहाड़ के बीचो-बीच एक नदी बनी हुई दिखाई दे रही है उपर आसमान दिख रहा है।

और एक कोने में दरवाजा लगा हुआ दिखाई दे रहा है।